सफ़ेद रंग का पानी बह रहा है चट्टानों के --

जो कि लाला रंग की है तथा साथ ही में--

ग्रिल से बना हुआ गेट भी --

तथा निचे की तरफ काफी ज्यादा पानी है जिसमे एक डंडा --

और कुछ और वस्त्र भी नजर आ रहै है वस्त्र अलग - अलग रंग के है जो की नीले --

दोनों किनारो पर काफी जायदा वृक्ष मदूद है मजूद है पीछे की--

अलग-अलग प्रकार के खम्बे लगे हुए है जिनमे सामने की--

पोधे है पोधे हरे रंग के है तथा साथ ही में कुछ और जगह भी नजर आ रही है जोकि मिट्टी के --

बाहर की तरफ दो तसले तथा बजली --

तथा पीछे की तरफ आसमान भी नजर आ रहा है।

आदुनि हाथ में थाली पकड़ी हुई है।

नीले रंग की कमीज डाली हुई है ऊपर की तरफ सफ़ेद रंग की लाइटिंग भी देखी जा सकती है।

तथा नीचे की तरफ काले रंग के बड़े -बड़े --

नजर आ रहा है आगे --

एक हरे रंग का ऑटो नजर आ रहा हैं।